बहोत सारे लोग इकट्ठा हो रखे है।

गेस के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

इस इमेज में एच_डी_एफ_सी बैंक में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इनके साथ में दो शुगर फ्री के पाउच भी रखे हुए हैं।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

जिसमें बलूंस और अलग अलग तरह के डेकोरेशन आइटम्स रखे हुए है।

इसमें नॉन वेज रेस्टोरेंट का बैनर भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक जे_सी_बी खड्डा खोद रही है।